ये एक एकेडमी है। यहां पर किलके क्रिकेट सिखाया जाता है और यहां पर बताते है कि कैसे खेलना है। बॉल बॉलिंग करनी भी बताते है कि कैसे करनी है।

ये एक स्कूल है। स्कूल में पढ़ाई होती है। स्कूल में काफी बच्चे आते हैं और बड़े आदमी भी आते हैं पढ़ने और यहाँ पे ये मूर्ति भी बतेरी अच्छी है।